एक लड़के का तस्वीर है जो सेल्फी लेते हुये अपने घर से घर पीछे शायद मंदिर है मंदिर से गेट बड़ा गेट है सांखली लगा है गेट में लड़का तस्वीर ले रहा है अपना।

यह स्कूल है बहोत बड़ा शासकीय स्कूल बहोत से गाड़ी सामने दिखाई दे रही है पीछे में भी गाड़ी है बहोत बड़ा-बड़ा पेड़ है और एक गाड़ी में स्टार्ट करते हुए जेंट्स दिख रहे है और कोई लेडीज चलती हुई जा रही है और सामने तिरंगा का वो तिरंगा लहराते है।

बाजू में पेड़ है बहुत बड़ा झंडा है पीछे--